बिल्डिंग के नीचे में ढेर सारे दुकान भी हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है इसके चारों तरफ में बाउंड्री किया हुआ है जो की वाइट कलर का है।

और बाउंड्री में बैलून लगाए हुए हैं।

सीलिंग में व्हाइट पुटी किया हुआ है।

पहाड़ के बगल में भी ढेर सारा पहाड़ लगा हुआ है।

और ग्राउंड के चारों तरफ में पेड़ लगाए हुए हैं और छोटे छोटे गमले भी रखे हुए हैं।

इस दुकान में एक मेन गेट है जिसमें सीसा लगा हुआ है।

ढेर सारी लड़कियां भी बैठे हुए हैं।

एक आदमी है जो वो रोटी बना रहा है।

और उसमें ढेर सारा बोतल और छोटा छोटा डब्बा रखा हुआ है।

इसके दीवार पर बल्ब लगे हुए हैं और बोर्ड भी लगे हुए हैं।